इस तस्वीर में एक मदरसा दिखाई दे रहा है।

मदरसा का गेट बैंगनी रंग का हैं।

मदरसा के अंदर झालर लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक छात्रावास दिखाई दे रहा है।

त्रावास के चारों तरफ स्टील की फेंसिंग की गई है।

इस तस्वीर में एक पुरस्कार देते हुए दिखाया जा रहा है।

ये तस्वीर चौदह जून की है।

इसकी एवज में इस लड़की को रक्तदान करने के उपलक्ष में पुरस्कार मिला।

दीवाल पे तिरंगे रंग का गुब्बारे लगे हुए हैं।

मैदान के बीच में बहोत सारे फूल लगे हुए हैं।

छोटे छोटे घांस से भरा हुआ है।

छोटा सा मकान भी बना हुआ है।

इस तस्वीर में एक पंडाल दिखाई दे रहा है।

पंडाल के अंदर काफी सारी मूर्तियां रखी हुई हैं।

यह मूर्तियां अलग अलग भगवान के अलग अलग लीला के बारे में है।

मैदान के बीचों बीच लोहे का कुछ बना हुआ है।

मैदान के एक कोने में बेंच लगा हुआ है बेंच पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में चट्टान दिखाई दे रही है।

जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है।

लड़की बैठी हुई है लड़का खड़ा है।

यह तस्वीर हाजीपुर जंक्शन की है।

इस दुकान में लाइटिंग का बहोत अच्छा व्यवस्था किया गया है।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

शीशे के चारों तरफ बल्ब लगे हुए हैं जो इस कमरे को रोशन कर रहा है।

इस मकान के सामने की तरफ बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

इस मकान के नीचे में पौधे लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक सैलून दिखाई दे रहा है।

इस सलून का नाम न्यू ताज हेयर सलून है।

इस सैलून के बाहर एक सिंटेक्स लगा हुआ --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

मॉल में दो एलीवेटर लगे हुए हैं।

यहां पे एक खिलौने वाली गाड़ी लगी हुई है।

मॉल के ऊपर वाले मंजिल पे एक --

इस तस्वीर में पुस्तकालय दिखाई दे रहा है।

यहां पे कई सारे एयर ब्लोअर दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

यह एक फीमेल जनरल वार्ड है।

इस वार्ड में एक बेड लगा हुआ है।

इस वार्ड में दो खिड़कियां है खिड़कियों पे लोहे का ग्रिल लगा हुआ है।

कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान में लाइटिंग के लिए सा चारों तरफ लाईट लगीं हुईं हैं।

दुकान के छत पे ए_सी लगी हुई है।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

नदी से उड़ते हुए कुछ पंछी दिखाई दे रहे हैं।

इस क्लब में नाचने के लिए म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है।

इस तस्वीर में तीन प्रतिमा दिखाइ दे रही है जिसमें एक प्रतिमा बड़ा है और दो प्रतिमा छोटे छोटे हैं।

क्रीम कलर का दिखाई पड़ता है घर के आगे रेलिंग लगी हुई है।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

कम दाम में बिक्री के लिए रखा गया है।

इस तस्वीर में एक सीमेंट से बना हुआ हाथी दिखाई दे रहा है।

इस इंसान ने फुल शर्ट पहनी है।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

भारतीय पोशाक में दिखाई दे रहे हैं लड़कियों ने लहंगा और साड़ी--

इस तस्वीर में एक एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है।

एयरपोर्ट के बीचों बीच एक एयरोप्लेन लगा हुआ है।

एरोप्लेन के आस पास बहोत सारे लोग खड़े है।

नदी के बीचो बीच एक लकड़े का नाव दिखाई दे रहा है।

नाव चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में निर्माण कार्य होते हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ मजदूर सरियों में --

सीमेंट डाल के ढलाई करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस तसवीर में एक मस्जिद दिखाई दे रहा है मस्जिद के दीवाल पे एक डिजिटल घड़ी लगा हुआ है।

मस्जिद सफेद रंग से रंगा हुआ है।

बत्तख को देखते हुए कुछ लोग भी खरे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे दो पिलर दिखाई दे रहे हैं।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

जिसमें से एक पेड़ पे पर पत्तियां नहीं हैं।

यह तस्वीर एक भगवान के पंडाल की है।

खिलौने के अश्व लगे हुए हैं।

पंडाल में भोपू लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां नदी के पास कुछ बच्चे खडे हुए हैं।

इस तस्वीर में कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है।

इस दुकान में शेरवानियां मिलती हैं।

यहां पुतलों ने शेरवानियां पहन रखी है।

यहां कुल तीन पुतले लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में गुलाब की कई सारी फूल ल हैं।

इस इंसान ने चेक शर्ट पहनी हुई है।

दुकान के एक कोने में कोकोकोला का फ्रिज लगा हुआ है।

इस दुकान में अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं।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

दुकान के दोनों तरफ मकान बने हुए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते है दुकान के बाहर तीन गाड़ियां लगी हुई हैं।

इस तस्वीर में एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में गाड़ी को ठीक किया जा रहा है।

इस तस्वीर में एक सलून दिखाई दे रहा है।

सैलून में एक इंसान बाल कटवा रहा है।

बाल कटवाने के लिए उसके सिर में --

ब्लू कलर का क्लिप लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक मछली दुकान दिखाई दे रहा है।

जहां पे दो महिलाएं बैठी हुईं हैं यहां एक महिला--

ने साड़ी पहन रखी है यहां एक महिला ने सूट सलवार पहन रखा है।

बालकनी की रेलिंग लोहे से के बनी हुई है।

यहां एक गुलाबी रंग का फूल है।

दुकान में कई सारी राखियां लटकी हुई हैं।

कुछ राखियां खुली में लटकी हुई हैं बल्कि कुछ राखियों में पैकेट लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बस दिखाई दे रहा है।

ओबर ब्रिज के नीचे बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं।

इस तस्वीर के कोने में बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक युवक झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक नृतकी की नित्य दिखा रही है।

नृत्यकी के पीछे सफेद रंग की कुर्सियां रखी हुई हैं।

नृत्यकी एक लाल और नीले रंग के--

कालीन पे नृत्य दिखा रही है।

यह तस्वीर में एक युवक चट्टानों के बीच खड़ा है।

और ब्लू कलर की जींस पहनी है।

युवक के पीछे गुफाएं बनी हुई हैं।

तभी खाद्य पदार्थ अलग-अलग ढंग से रखे गए हैं।

यहां पे मैगी हैंड वॉश --

और अलग अलग खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं।